लगा है नीचे की तरफ कांटेक्ट नंबर और एड्रेस लिखा है।

यहाँ एक बांस में एक टुकड़े में पानी है और एक दूसरी तरफ टुकड़े में पानी है।

इनके ऊपर एक वॉच जैसा भी है।

मशीनें जैसी रखी हैं यहां पे उनके ऊपर नंबर लिखा हुआ है।

और कुछ तस्वीरें रखी हुई हैं यहां पीछे की तरफ एक खालसा का साइन है।

यहां पे काफी सारे बच्चे डांस कर रहे--

सामने की तरफ एक काउंटर बना हुआ है।

यहां पे काफी सारी चिंगारियां नीचे की ओर गिर रही है।

तीन वाले दो वाले और एक वाला गैस ली--